यहाँ मार्किट से कम दाम में सामान उपलभ्ध और अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता --

यह एक बाजार का फोटो है जो काफी बड़ा बाजार प्रतीत होता है यहाँ से लोग अपने गाँव तक सामान को ले जाया करते है।

यह एक नदी है । जिसमे लोग बोट चला रहे हैं । इस नदी के किनारे वृक्ष लगे हुए हैं । लोग आनंद --